यह एक सड़क है और यहां काफी सारी गाड़ीये --

यह एक ऑफिस है और इसमें अलग-अलग कबर्ड बने हुए हैं।